और उसके पीछे ऊपर बहुत से टेंट लगे हुए है और एक सोफा और एक व्हाइट कलर की--

इस चित्र में बहुत सी व्हाइट कलर की कुर्सी रखी हुई है।

इस दुकान में एक लड़का फोन लिए खड़ा हुआ है।

और बाहर एक काले कलर का शीशे का गेट लगा हुआ है।

और उसके पीछे बहुत से पेड़ खड़े हुए हैं।

और बहुत से आदमी बैठे हुए हैं।